रंगोली एक ऐसा प्रतियोगिता है जिसमे बच्चियाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं।

यहां पर ग्राहक को कोई भी शिकायत उत्पन्न होने पर वह आकर यहां पर शिकायत दर्ज करवा सकता है और अपने दुकानदार के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है।

इस दिन सेंटा बन कर लोग अपने प्रियजनों को भेंट करते हैं कुछ मूल्यवान वस्तुएं और एक दूसरे सम्मान करते हैं।

यहां पर सभी तरह के किताबें उपलब्ध होती है। कुछ किताबें तो यहां पर सेकेंड हैंड भी मिलती है।

जो आप को निर्माणदिन घर दिख रहा है इसके निर्माण का कार्य अभी चल रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया --

गया है ये कुछ मजदूर सीमेंट से इस घर की ढल्लैया कर रहे हैं और कुछ इसको सुन्दर बनाने में लगे हुए है।

डांस जिसका नाम सुनते ही बहुतो के पैर थिरकने लगते हैं नृत्य एक ऐसी चीज है जो लोगो का मन मोह लेती है।

तो ये लोग यहां आकर के कुछ पैसे दे करके अपना ऑनलाइन काम करा लेते हैं।

सबसे ज़्यादा खाते इसी बैंक में खोले जाते हैं। कुछ खाते तो इसमें जन धन की भी खोले जाते हैं जिन्हे ज़ीरो बैलेंस कहा जाता है।

आज कल यह घूमने की बहुत प्रसिद्ध जगह हो गई है।

एसी चीज़े मैक्सिमम म्यूजियम में देखने को मिलती है। म्यूजियम अपने पुरानी चीजो को सहेज कर रखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।